यह तस्वीर किसी पार्क की है।

पोस्ट पर मछली के चित्र बने हुए हैं।

यहां लंबा सा तार खींचा हुआ है।

लड़की जूता पहनी हुई है नीचे में एक गमछा रखा हुआ है।

यहां पे तार खींचा हुआ है यहां पे गर्ल्स लिखा हुआ है यहां चारों ओर से बाउंड्री किया हुआ है।

यहां लाल रंग की कारपेट बिछा हुआ है बैकग्राउंड काला नजर आ रहा है।

यहां पर सौ परसेंट लिखा हुआ है यहां पर रांची झारखंड लिखा हुआ है।

यहां चारों ओर से बाउंड्री किया हुआ है यहां तलाब पर कुछ घास भी उगे हुए हैं।

यहां एक पेचकस तथा प्लस है।

यह तस्वीर किसी साइकिल रिपेयर दुकान की है।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

टाटा रांची ए_सी लिखा हुआ है।

यहां दो गुना दो तो लिखा हुआ है खिड़कियां पर कांच की ग्लास है यहां पर्दे भी लगे हुए हैं।

बहुत सारे शैंपू रखें तथा कुछ फेस वॉश भी है।

यह तस्वीर किसी ट्यूशन की है यहां पे काफी सारे बैलूंस लगे हुए हैं।

यहां पे एक बांसुरी भी बनाया गया है इसे प्लास्टिक से ढका गया है।

यहां दूल्हे का पगड़ी भी दिखाई दे रही है।

यहां पे हारमू हाउसिंग कलोनी शाखा लिखा हुआ है।

यहां मरीजों के लिए बहुत सारे बेड लगाए हुए है।